हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक लड़की बैठी हुई नजर आ रही है जिसने सॉक्स पहनी हुई है और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने कुछ भी नी पहना नहीं हुआ है नीचे जमीन पैरों में--

इस पिक्चर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें कुछ गोल -गोल से कुछ अ स्टील के बने हुए आइटम नज़र आ रहे है काफी शाइनी से है सिल्वर से कलर के ओर उसमें चपटा सा भी डिजाइन हमें देखने को मिल रहा हैं।